एक भाजी वाला अंकल है और जस्ट उनके पास मे पत्ता गोभी है टमाटर है केला भी बेच रहे हैं वो--

एक बहुत बड़ा हॉल है जस्ट एंट्रेंस है उसमें बीच में जस रूम व्यू है अ जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है ए --

ये कुछ जिम है येल्लो कलर के लाइटस लगे हुए है एण्ड डंबल लेफ्ट साइड में डंबलस ल अ रखे हुए है पूरे छोटे से बड़े साइज़ में --

ये कू खदान है जहाँ से वो अ वेट मशीन सच स्टोन का भर भर अ गिट्टी अ सम्थिंग पूछता है ये वेट कर रहा है।

एक साइड में एक ट्रेन अ ट्रेन से जा रही है और साइड में जस्ट पब्लिक इकट्ठा अ रेसटे कर अ वेट कर रही है ट्रेन का --

और वो जा रहा है एक उनको नोटिस क्र रहा रोड रिपेयर हो रहा है ।

और जस्ट इंजीनियर सब एम्प्लोयी देख रहे हैं कहाँ पे क्या बनाना है आउट पूरा--

जस्ट अ कोई ऑफिस है देेन वो कुछ एक लड़का बैठा हुआ है पीछे की साइड में एक दो चार लोग बैठे हुए है ।